इस स्कूल के सामने बहुत सुंदर हरी घास लगी हुई है।

जिस घर के सामने बहुत अच्छी अच्छी कारें खड़ी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर खिलौनो की दुकान है।

जिस स्कूल के अंदर एक झंडा खड़ा हुआ है।

वो एक आदमी बैठा हुआ है।

जिस दुकान के अंदर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

जिस स्कूल के अंदर कुछ लड़के व कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं।

और साइड में तरह तरह के पौधे खड़े हुए हैं सभी पौधे हरे रंग के हैं और काले रंग का गेट भी लगा हुआ है।

इस दुकान के बाहर फोर जी लिख रहा है।

यह एक बहुत सुंदर घर है जिस घर के अंदर कुछ बच्चे खे जा रहे हैं तो एक एक आदमी आ रहा है।